एक टिश्यू पेपर दिखाई दे रहा है। कॉफी कप दिखाई दे रहा है। एक फोन दिखाई दे रहा है।

समान दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है एन कुछ केबल्स दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कोई बच्चे दिखाई दे रहे डांस करते हुए यह एक हॉल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जेंट्स दिखाई दे रहा है।

रेड कलर की टाइल्स दिखाई दे रही है। सफेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कुछ खिड़कियां दिखाई दे रहे --